बैंक फेडरल बैंक दिखाई दे रहा है।

एजेंसी ओला की दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी बाइके भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने एक कंपनी दिखाई दे रही है।

मंदिर को पत्थरों से बना हुआ दिखाई दे रहा है मंदिर के ऊपर झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे लोग भी दिखाई--